यहाँ देखिये नाव चल रहे है पानी में कितना अच्छा नाव चल रहा है बहुत बढ़िया नाव चल रहा है।

ए.टी.एम है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है इतना सुन्दर लग रहा है की मत पूछिए बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है।